उसके दाएं हांथ में पेड़ लगे हुएं और नीले रंग की खिड़कियाँ हैं।

पी.वि.आर सिनेमा जोकि पूरा खाली है। सामने सिनेमा का बोर्ड लगा हुआ है।

बाये हाथ पर पेड़ है यहाँ पर मिट्टी दिखाई दे रही है और वहां पर झाड़ी है | उसके बिलकुल सामने झाड़ियाँ दिखाई दे रहीं हैं ।

सामने पानी का तालाब नज़र आ रहा है आसमान नीला हैं।

ये एक मज्जिद है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं सामने एक मौल्वी खड़ा है और नमाज़ियों के ऊपर धूप पड रही है।

ये एक क्लास रूम है क्लास रूम मे बेंच लगे हुए हैं एक सफेद रंग की टेबल दिखाई दे रही है।